इसकी टेबुल ओंरेज कलर की हैं।

और काले रंग का स्टूल भी है।

ए.टी.एम. बहुत बड़ा है इसका स्‍क्रीन भी बहुत चौला है।

स्‍कार्पियों उसके बगल में जीप लगी हुई है जीप के आगे --

पार्क में बहुत बड़ा झूला लगा हुआ हैं।

इसमें सारी लहंगा बच्चे की कुर्ती --

ग्लास लगा हुआ है जो आगे से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।

इसमें आदमी आ के अपना फिटनेश करते हैं।

कुवारें हैं बच्चे घूम रहें हैं।

सादी का सजावट इतना खूबसूरत होता है।

एडजस्ट हो सकतें हैं। शादी विवाह समारोह भी बहुत अच्छे से हो सकती है इसमें।

स्टेशन इतना खूबसूरत है प्लेटफार्म भी बहुत खूबसूरत है।

यहां काफी तादादो में आदमी आते हैं घूमने के लिए।

सोनपुर के नदी में हाथी तीन चार हाथी हैं जो नहा रहे हैं।